और पीछे की साइड बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर देखने में बहुत सुंदर लग रही है इस तस्वीर में गमले भी रखे हुए हैं बहुत सुंदर सुंदर।

यह तस्वीर एक जागरण जैसी लग रही है।

और आगे की साइड तीन चार आदमी भी बैठे हुए हैं।

और आगे भी मिट्टी मिट्टी फैली हुई है।

जो बहुत ही सुंदर लग रहा है जिसमें तीन साइड में ओम ओम छिपा हुआ है।

इस तस्वीर में बहुत सारे बच्चो के खिलौने भी रखे हुए हैं जिस--

पोचे साफ सफाई करने का झाड़ू रखी हुई हैं और--

गुलाबी कलर हुआ है तीन चार बाइके खड़ी हुई है।

और एक पाइप भी दिखाई दे रहा है।

मिट्टियों में बहुत सारा व्हाइट कलर का सामान भरा हुआ है।